बिल्डिंग रंग सफेद है एक पिलर दिखाई दे रहा है।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

गड्ढों में पानी भरा हुआ है।

कुछ सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा सा शटर लगा है।

एक बिजली की डी_पी दिख रही है।

सामने हमें पीला फूल नजर आ रहा है।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ी टीवी--

मस्जिद का रंग सफेद है।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

बाइक और ऑटो नजर आ रहा है।

एक ऑटो जैसा दिख रहा है गाय खड़ी है।